बहुत एक लड़का उसमें बैठा हुआ है बहुत सारे बच --

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है इसमें बहु बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहै हैं।

गिट्टि ऑन रखी हुई हैं छत का काम हो रहा है बहुत सारे--

एक नीचे डस्टबिन रखा हुआ है एक कैरट रखी हुई है बहुत सारी सरिये लगे हुए है एक बाल्टी रखी है।

उसमे एक वाइट कलर का बना है बहुत सारे बच्चे मोनो खेल रहे है यह एक गार्डन है बहुत सारे पेड़-पौधे लगे है।

पेड़ लगे हुए है जिसमे बहुत सारे फ्लावर आ रहे है पिंक कलर के पीले कलर के--

इसमें बहुत सारी मशीने रखी है जिम की ब्लैक कलर की मशीने हैं ये एक जाली का गेट लगा है।

इसका रेड रिक्शा का कलर रेड कलर है एक पीछे बहुत बड़ी रेड कलर की--